इस फोटो में मुझे एक खंभा दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे कुछ सजावट दिखाई दे रहीं हैं।